इसमें कई सामानें लगी हुई हैं जैसे चॉकलेट्स सॉस कॉफी पाउडर ।

कफ़ों कलर ब्राउन व्हाइट ब्लू ग्रीन ऑरेंज काफी कलर हैं।

एक बैठने के लिए व्हाइट कलर का स्टूल है।

या हेजलनट फैक्ट्री है। इसके सामने बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर माई सेकंड होम लिखा है।

दुकानों में अलग अलग तरीके के सामाने रखी हुई है।

काउंटर पर स्कैनर और एक शैंपू दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में कंगन और कलावा बंधा हुआ है।

इसके बीच में एक बड़ी सी सड़क नजर आ रही है।

एक अलमारी खाली है एक पर बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक गेस्ट हाउस है जिसके पास में एक दुकान बनी हुई है।

सामने ऊपर मारुति सुजुकी अरेना लिखा हुआ है।

एक टीचर हैं जिन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है और येलो कलर की लाइट से चाट अड्डा लिखा हुआ है।

इसके ऊपर बेलागावी टू धारवाड़ ए_जी_सी वोल्वो लिखा हुआ है।

बस के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट शर्ट पेहना है।

यहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक आदमी कॉफी पीता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक आदमी बैठा हुआ हैं जिसने व्हाईट ग्रीन की टीशर्ट पेहनी हुई है।

इसमें दो आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी पर एक आदमी बैठा है जिसने येलो कलर का शर्ट पहना है।